ऊपर नीचे देख रहे हैं।

दिखाई दे रहा है छत डलती दिखाई दे रही पीछे के तरफ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं एक व्यक्ति सामने की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी नजर आ रही है नीचे की तरफ व्यक्ति --

आस पास दो व्यक्ति खड़े हैं। यह चित्र एक बड़े कारखाने का दिखाई दे रहा हैं जहां बहुत सारे ऑटो खड़े हुए हैं। पीला और हरे रंग का ऑटो --